यह एक टेबल है टेबल पर एक पर्दा बिछा हुआ है जो कि चेक्स मे है व्हाइट और रेड कलर का है।

थेली रखी है जोकी कुछ व्हाइट कलर की है कुछ येलो कलर की है। तीन व्यक्ति है एक पिकअप रखी है।

बाइ ब्लू कलर अम्म ब्लैक कलर के लोअर में है पीछे विंडो दिखाई दे रही है

यहाँ पर लोहा बिछा हुआ है और बहुत सारे व्यक्ति हैं पीछे ग्राउन्ड दिख रहा है।

यह एक डांस प्रैक्टिस रुम है यहाँ पर चार लड़किया प्रैक्टिस कर रही है एक स्टूल रखा है स्टूल के ऊपर बाल्टी है।